जो की ये टोकरी और गुलदस्ते हैं ये या बास की लकड़ी के बने हुए हैं।

हेलो दोस्तों जैसे की आपको यहाँ पे एक बहौत ही सुंदर और प्यारा सा दॄश्य दिखाई दे रहा है।

बच्चो ने व्यायाम करने के लिए ड्रेस पहन रखी है जो की काफी आकर्षित लग रही है और बच्चे इसमें बहोत प्यारे लग रहें हैं।

इसमें कुछ पत्ते हैं जोकि आप सोचरे होंगे की ये पत्ते किसके हैं लेकिन ये पत्ते पुदीने के हैं।

इसमें कुछ टोकरियाँ रखी हुई हैं उन टोकरियों की विशेषता है कि यह टोकरियाँ लकड़ी से बनी हुई हैं और ये जो लकड़ी है वो बांस की है।

हॅलो दोस्तों जैसे की आपको यहाँ पे बहोत ही सुंदर द्रिश्य दिखाई दे रहा है यहाँ पे आगे कुछ पहाड़ हैं जो पहाड़ काफी हरे-भरे हैं।

इन पहाडों पे काफी बड़े-बड़े पेड़ हैं जो कि काफी अच्छे लग रहें हैं।

हेलो दोस्तों जैसे की आपको यहाँ पे एक बहौत ही प्यारा सा सुंदर सा दॄश्य दिखाई दे रहा होगा।

हॅलो दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पे एक द्रिश्य दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आगे कुछ बड़े-बड़े पहाड़ हैं।

यह इमेज झर झरने का है जो की दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा है।

ब्लू कलर की है जो कि दिखने में काफी खूबसूरत लग रही है और यहाँ पर एक बाइक भी है जो दिखने में काफी --